ये तस्वीर में मुझे बहुत सारे टेबल्स और चेयर्स दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर में मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे गोल्डन बुद्धा की एक मूर्ति नजर आ रही है जिसके आगे एक लाल कलर की बॉक्स भी बना हुआ है।

तस्वीर में लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

जिनके ऊपर एक फैन और एक ए_सी भी लगा लगाके है लाइट्स भी नजर आ रही है।

ऊपर में बहोत सारे छोटे छोटे टॉयज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और प्लास्टिक में भी रखा हुआ है और ऊपर में चिप्स लाइट भी लगाया हुआ है।

ये तस्वीर में मुझे कुछ लोग ऊपर में खड़े होते हुए दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर में मुझे लाल रंग की कारपेट दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर में मुझे बहुत सारे सब्जियां दिखाई दे रही है।

एक पेड भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे दो पंखा ऊपर में लगाया हुआ दिखाई दे रही है।

ऊपर में बहोत सारे फैंस भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक बेसिन भी दिखाई दे रहा है और एक खिड़की भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे जमीन पर बहुत सारे कच्चा मकई नजर आ रही है।

इन मकई का सामने अह सूखा पत्ता और सूखा लकड़ियां नजर आ रही है।

ये तस्वीर में मुझे बहुत सारे तरह तरह की सॉस दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे शीशा के अंदर रखे हुए बहोत सारे बिस्किट देख रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत बड़े बड़े पेड़ डिखाई डे रही है और एक वोट भी नजर आ रही है और एक इंसान भी डी नजर आ रही है।

रेस्टोरेंट का जैसा जिसमें किचेन स्टील का बनाया हुआ कुछ और--

अपोजिट रोड का अपोजिट में दो घर है और ऊपर में ब्रिज है।

अपना लोकल सब्जी सब जो कस्टमर आके वहां में खड़ा होता है और कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहा है और कुछ पोस्टर्स भी है।

ये तस्वीर मे लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में कॉर्नर में एक गाड़ी खड़ा हुआ है।

ये तस्वीर में मुझे लाइट्स भी दिखाई दे रही है।